बहुत सारे खड़ा होके हाथ जोड़े है बहुत सारे पंखे है बहुत सारे लाइट है बहुत भीड़ है।

मरे को लग रहे उधर लाइट चमक रहा है और रथ बहुत ज्या मस्त दिख रहा है बहुत अच्छा क्यूट दिख रहा है मजा आ गया।

ढलाई हो रहा है बहुत अच्छा दिख रहा हैं घर में मस्त ढ़लाई हो रहा है ।

बहुत ज्यादा आदमी है फोटो लगा हुआ है कृष्ण भगवान का और लाइट वगैरा बहुत चमक रहे हैं।